इस तसवीर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे तीन कार दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे किराने का सामान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा--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

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही हैं।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

इया यहाँ मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक मन्दिर दिखाई दे रहा है।